यहाँ पर एक सैलून है इस सैलून मे नाई एक कस्टमर का बाल काटते हुए नजर आ रहे है और सैलून काफी समय से यहाँ पर है और सैलून मे बहुत अच्छे से बाल को कटा जाता है।

मोहे मोठीका भी अच्छी दिखाई दे रही है। यह सोफे की रंग इतनी अच्छी है की किसी का का भी मन--